यहां पर एक स्लाईड लगीं हुईं है बच्चों के मनोरंजन के लिए और साथ ही साथ उनको खेलने के लिये ये स्लाईड देखने में एकदम कलरफुल लग रहीं हैं।

कुछ बच्चे भी हैं यहां पर कुछ लोग हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं कुछ लोग घूम रहे हैं कुछ लोग बाते कर रहे हैं और बहौत जादा कोहरा भी है।

यहां पर इक समुद्र है समुद्र में एक नाव दिखाई दे रही हैं और एक जहाज बहोत ही ज्यादा बड़ा ये जहाज देखने में बहोत ही ज्यादा बड़ा है।

और वह कुछ पॉइंट मे भी वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर बहौत ज्यादा साफ-सफाई भी नजर आ रही है कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ सफेद रंग का पुता हुआ --

यहाँ पर एक मॉल है मॉल में बहोत सारी चीज़े दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारी किताबे रक्खी हुई है रंग बिरंगी यहाँ पर एक बोर्ड भी टंगा हुआ है इ सी इ और इ इ इ ऐसा कुछ लिखा हुआ है।

ब्रिज का कलर लाल और सफेद कलर का है यहां पर जो स्पेस है वो भी लाल और सफेद कलर का है यह देखने में तो बहोत ही ज्यादा सुन्दर नजारा लग रहा है।

यहां पर एक रैक है रैक बहोत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है एकदम हरा भरा रंग बीरंगा लग रहा है यहां पर लाल पीला हरा बहुत प्यारा कलरफुल लग रहा है।

यहाँ पर एक कमरा है कमरे मे तीन चार कुर्सियाँ रखी हुई हैं जो की एकदम नई लग रही हैं क्योंकि उन पर पॉलीथिन चढ़ी हुई हैं चारों कुर्सी का जो कलर है वो लाल कलर है।

यहां पर एक बहौत प्यारा घर है घर का जो गेट है वह देखने में बहौत ही ज्यादा सुन्दर है और थोड़ा स छोटा भी है यहां पर हरे कलर का गेट है।

यहाँ पर एक रोड है रोड के सामने एक बहोत प्यारा हरा भरा खेत है खेत दिखने में बहोत ही ज्यादा सुंदर है क्योंकि खेत एकदम हरा भरा है वहाँ पर बहोत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं और आसमान भी बहोत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर ये एक मॉल है मॉल में बहौत सारी चीजें रखी हुई हैं स्टील के डिब्बे स्टील के बर्तन बास्केट डोरमेट्स सोप्स बिस्किट्स बहौत सारी चीजें रखी हुई हैं।

यहां पर एक रोड है रोड पर गड़ियां पार्क कि गई हैं गड़ियां फोर व्हीलर हैं जो कि देखने में बहौत ही जादा सुन्दर हैं यहां पर सभी गाड़ियां सफेद कलर की खड़ी हुई हैं।

यहां पर सामने एक बगीचा टाइप भी दिखाई दे रहा हैं एक आदमी बैठा है एक आदमी खड़ा हुआ है वहां पर कुछ टाइल्स भी लगे हुए हैं और बहोत ज्यादा सुन्दर और बहोत बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।